ये एक नदी है यह नदी यह रात का समय है नदी पूरी बहुत बड़ी है और सूरज डूब रहा है उस सूरज की पूरी किरने नदी के पानी में दिख रही है।

वो कार रोड पे खड़ी है।

यह कप की दुकान है उस यह कप की दुकान मे --

जिसमे लेडीज और जेंट्स की गर्दि लगी हुई है भीड़ लगी हुई है।

और वो जाम डंठल से चिपका हुआ है।